और इस दुकान का नाम टीकाराम कपड़े वाला है यहां पर बोहोत से तरह की साड़ियां और अंदर की तरफ कपड़े नजर आ रहे हैं। यहां पर एक डमी को कपड़े पहन कर बाहर खड़ा किया है |

ये एक नदी का फोटो है। जिसके पास से एक पुलिया जा रही है और वो पुलिया के नीचे से भी पानी जा रहा है।

और वहाॅं पे अलग-अलग तरह के टॉप भी लगे हुए हैं वहाॅं पे एक नाम लिखा हुआ है तविषा करके --

ये एक कपड़े की दुकान है जहां पर बड़ों के लिए बच्चों के लिए लड़कों के लिए लड़कियों के लिए सबके लिए कपड़े दिख रहे हैं |

हैं यहां पर छोटे बच्चों के भी कपड़े है पेंट शर्ट है और लड़कियों के पहनने के लिए फ्रॉक और अलग तरह के कपड़े भी हैं |

और वहां पे अ-आगे की तरफ एक खुली जगह जैसा बना हुआ है यहां पर थोड़ी-थोड़ी घास है।

उसके ऊपर की जगह से जा आने जाने के लिए रस्ता है। जहां पे अ और ये इसका इंजन कुछ हरे रंग का है।